घास भी दिखाई दे रही है इसमें इस की बाउंड्री भी दिखाई दे रही है।

दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत और सामान भरे दिखाई दे रहे है इसमें कुरकुरे के पेकेट दिखाई दे रहे है इसमें थम्सब की बोतले भी दिखाई दे रही है इसमें रेड कलर का स्टूल दिखाई दे रहा है इसमें जो इसमें खट्टे के बोक्स भी दिखाई दे रहे है।

चप्पलें दिखाई दे रही है इसमें ब्लेक कलर की चप्पल भी दिखाई दे रही है इसमें फर्स दिखाई दे रहा है जो सफेद कलर का इसमें खिड़कियाँ भी दिखाई दे रही है इसका पेंट गुलाबी और वाईट दिखाई दे रहा है सफेद कलर का बादल भी दिखाय दे रहा है।

इसमें एक कलर की ईट दिखाई दे रही है इसमें फर्श दिखाई दे रहा है जिसका कलर वाईट और रेड दिखाई दे रहा है इसमें इट की एक और मंदिर दिखाई दे रही है। इसमें --

इसमें एक होल दिखाई दे रहा है जिसमे बहुत सारी कुर्सी रखी दिखाई दे रहि दिखाई परदे दिखाई दे रहे है जिसमे --

विद्यालय दिखाई दे रहा है जिसका कलर सफेद और पीला दिखाई दे रहा है इस पे बिजली का खम्बा दिखाई दे रह है इसमें बिजली के वायर दिखाई दे रह है इसमें हरे बरे पेड़ दिखाई दे रह है इसमें सफेद कलर का बादल दिखाई दे रहा है।

होल दिखाई दे रहा है इसमें रेड कलर का की कलि कलिन बीचा हुई दिखाई दे रही है इसमें परदे दिखाई दे रही है इसमें गुबारा दिखाई दे रही है जिसका कलर रेड और हरा दिखाई दे रहा है।

शॉप लगी हुई दिखाई दे रही है जिसमें रेड कलर की मिट्टी मिट्टियां दिखाई दे रही है इसमें छोटे छोटे पत्थर भी है उसमे ब्लैक कलर की बाइक भी दिख रही है।